एक डस्टबिन रखा हुआ है जिसका कलर लाल है।

और एक आदमी का पैर भी दिख रहा है।

जिसके पैर में चप्पल भी दिख रही है।

और जिस बास्केट में ये मछलियां रखी हैं उसका कलर नीला है।

कुछ साइकिलें भी खड़ी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

कुछ फूलों का कलर पीला है और कुछ फूलों का कलर संतरी है।

यह एक चित्र है जिसमें मुझे एक मैदान में कुछ जीव दिखाई दे रहे हैं।

और दूसरे आदमी के सर के चोटी का कलर नीला है।

यह एक चित्र है जिसमें मुझे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

और शीशे के लगे गेट भी हैं।

और सामने मेज भी और छत पर कुछ झूमर भी लगे हुए है।

एक बोर्ड पर लिखा हुआ है डॉक्टर अनुज पवार और दूसरे बोर्ड पर लिखा हुआ है--

और एक का कलर थोड़ा हरा है और पीछे कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक चित्र है जिसमें मुझे कुछ पुतले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है जिसमें मुझे कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।